और यहां पर बिजली के तार हैं जो कि काफी है।

या फिर तलाव की। ये काफी बड़ी काफी बड़ी नहर है।

कुछ लोग बैठे हुए है और यहां पर --

और जैसे कि हमें खेल खिलौने की जरुरत हो बच्चे --